उपर एक समोसे का रखा हुआ है।

गाड़ी रखी हुई है। नीचे एक पेंटिंग रखी हुई है।

यहां पर एक दुकान है जिसके ऊपर कांच का दरवाजा लगा हुआ है ओम छपा हुआ है।

कुछ काले रंग की है।

सामने बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक बहोत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है जिस पर लाल रंग का कलर किया--

लोहे की नाले लगी हुई हैं।

नीचे लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है सामने लोहे की ग्रिड लगी हुई है।

बराबर में एक लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा है एक मीटर लगा हुआ है।

यहां पर एक नलका है उसके बराबर में लकड़ी की तीन बलिया खड़ी हुई है लोहे का जाल लगा हुआ है।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

यहां पर चारों तरफ छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़ा बड़ा घास दिखाई दे रहा है एक बोर्ड भी लगा हुआ है सामने कांच का दरवाजा लगा है।

यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसका रंग सफेद है। उसके बराबर में एक कूलर है।

नीचे सफेद रंग की टाइले लगी हुई है दीवारों पर सफेद कलर किया हुआ है।

यहां पर सामने कांच का बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है जिस पर फोर जी लिखा हुआ है।